बहुत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

चारों तरफ बैठने के लिए कुछ लाल बेंन--

खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग प्ले स्टोर में प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ युवतियां और कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं।

सामने एक स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है।

अलग अलग तरह के पकवान रखे गई है।

सामने बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को--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

दो सफेद रंग की गाड़ियां सड़क में खड़ी हुई नजर आ रही है।

जिसके बाहर बैंगनी रंग का एक--

और एक बड़ा सा साइनेज बोड लगा हुआ है।

खड़ी हुई नज़र आ रही है।

इस चित्र में एक छोटी सी फलों की दुकान नजर आ रही है।

बुक्स की दुकान नजर आ रही है।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

कुछ ए_सी और कुछ पानी की टंकियां लगी हुई नजर आ रही हैं।